चलना चाहिए वहाँ पे है ना और खूबसूरत सी झील का मजा लेना चाहिए हमें।

के लग रहा है। काफी अच्छी जगह ये होटल है क्योंकि --

एक सामने में खड़े हुए हैं और फिर यहाँ पर लोग अन्दर तो नहीं जा रहे हैं लेकिन काफी लोग हैं बाहर ही में --

तो पिज़्ज़ा आ गया यहाँ पे लालच आ रहा है लेकिन जल्दी हो --

उतार लिए है। और जैसे कि हम जानते है एक-एक चीज वाली ये है और फिर भी लगता है कि --

ग्रीन और प्रीग्रीन चिली भी लगी हुई है यहाँ पे और --

कि वैसे लेकिन इन्सान वहाँ पे बैठ के बेच रहा है बेचारा और सोच रहा है कि कोई तो आये और ले जाये।

ते मीठा उठा है। होटल की लग रही है। ये फिगर और फिर यहाँ पे उ --

से एन्जॉय भी कर रहे है काफी और फिर सूरज भी ढल रही है यहाँ पे देखे तो --

सो हे गायस यहाँ पे लग रहा है पार्टी चल रही है। और काफी खूबसूरत पंडाल लगे है यहाँ पे --

के लायक और फिर यहाँ पे एक अ ग्रीन और वाइट कलर के हाउस --

और ग्रीन ग्रीन कलर का है वो पौदान के पास लगी हुई --

औ और येलो कलर की यहाँ पे रोड लग रही है और एक लड़की उधर से जा रही है। हरा हरा --

नमस्कार यहाँ पे बुक स्टोर में आये हुए है। एक --

ये उधर दिख रही है। ग्रीन भी है और फिर लोग काफी टेंशन में दिख रहे हैं कि कैसे हो कैसे हो --